ये ककोलत का झरना है और पानी रेत की तरह बह रहा है। बहुत अच्छा नजारा लग रहा है देखने में। पत्थल उत्थल भी है उसी पे से गिर रहा है और इधर करगी में झाड़-उड़ भी है।

और यहाँ पे बिजली का तार भी है और ब्रिज ग्रे है।

यहाँ पर का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर लगता है जैसे कि का ही सीन है और आगे पीछे बहुत सारा फील्ड जैसा लग रहा है खेत है उधर पर पीछे में स्कूल जैसा लग रहा है इधर पर लाइट -वाइट् लगा हुआ है उधर ताड़-उड़ का गाछ --